जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने मास्क लगा हुआ है वो अपनी सेल्फी ले रहा है।

ये एक बहुत बड़ी जगह जिस के बाहर के दिवार के पास कुछ छोटी-छोटी घासे उगती हुई दिखाई दे रही है।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

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े कट्टे रखे हुए दिखाई दे रहे है काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग ऊपर की साइड खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहां पर काफी सारा अँधेरा है।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

और कुछ टेबलेट रखी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए जिनके हाथ में पर्स है।

यहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो प्राथना करते हुए दिख रहे है यहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी टोकरियां रखी है जिसमे फ्रूट्स और पूजा का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देरे है आसमान म--

बिल्डिंग के पास कुछ बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ रिक्शे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ स्कूटी खड़ी हुई कुछ बाइक्स खड़ी हुई है यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है स्टेशन के ऊपर एक जंगा लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये काफी सुंदर लगा रहा है यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहा है ये स्टेशन काफी बड़ा है।